में तकिए पे फूल लगा हुआ दिख रहा है और एक पलंग भी रखा हुआ दिख रहा है एक खिड़की दिख रहा है।

यहां पे दो लोग गाना गाने के लिए खड़े हैं और सामने एक पेपर दिख रहा है एक ब्लैक कलर का।

और यहां पे बहोत व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं चेयर लगा के और बहोत लोग ग्राउंड पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

और एक लाइट लगा हुआ भी दिख रहा है बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ दिख रहा है मंदिल के ऊपर।

और एक नारियल का पेड़ दिख रहा हैं यहां पे दो पेड़ और दिख रहे हैं।

और एक बालकनी में लाल कलर की साड़ी पसारी हुई है और थोड़े बहोत पत्ते दिख रहे हैं।

हरे भरे बहोत सारे पेड़ दिख रहे है घना जंगल दिख रहा है।

सामने पिक्चर भी लगा हुआ है बहुत सारे दरवाजे भी दिख रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ है ये सामने।

पानी पानी में पत्ता भी दिख रहा है हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

दो व्यक्ति खड़े हैं एक टोपी पहना हुआ दिख रहा है एक माक्स पहना है।

यहां पे एक लड़की नाच रही है जो कि काले कलर की कपड़े पहनी है।

और नीचे कुछ व्हाइट कलर का सामान गिरा हुआ दिख रहा है।

और यहां पे पीले कलर के बहोत सारे बाम्बू दिख रहे हैं ब्लू कलर के पटरे मारे हुए दिख रहे हैं।

और यहां पे धुआं भी दिख रहा है एक वाइट कलर की थैली रखी हुई दिख रही है।

और यहां पे वाइट कलर का कुछ लोहे का लगा हुआ दिख रहा है।

जिसमें से दो लेडिस बैठी हुई दिख रही है दो व्यक्ति खड़ी हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति के गले में रुमाल बांधा हुआ दिख रहा है इनका लाल कलर का मग्गा लिया हुआ दिख रहा है अंकल कुछ हाथ में काला कलर का पकड़े हैं।

हवा भरने वाला एक पाइप दिख रहा है और यहां पे ब्लैक कलर का गेट दिख रहा है सामने कार खड़ा है।

और यहां पे कटी हुई बहोत सारी लकड़ियां रखी हुई है और गुजराती में कुछ म दीवाल पे लिखा हुआ दिख रहा --

यहां पे लाल कलर का बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ दिख रहा है।

एक पंखा भी लगा हुआ दिख रहा है बहुत व्यक्ति खड़े हैं बहुत व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे --

हरे कलर की पेंट पहनी हुई दिख रही है उसका फेस नहीं दिख रहा है हल्का दाढ़ी है।

थोड़े बहुत पानी भी जमे दिख रहे हैं और सूखी हुई बहोत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं।

सूखे हुए पेड़ भी दिख रहे हैं और हरे भरे भी पेड़ दिख रहे हैं।

दो पत्ते गिरे हुए हैं और सामने एक पीला कलर का बोर्ड लगा है उसपे कुछ लिखा हुआ है।

व्हाइट कलर का बहोत दीवाल दिख रहा है।

और यहां पे एक अलग कुर्सी रखा हुआ भी दिख रहा है और यहां पे एक सोफा भी दिख रहा है यहां पे बहोत सारे पंखे भी दिख रहे है।

यहां पे बहोत सारे गमले रखे हुए दिख रहे हैं और यहां पे चार पेड़ दिख रहे हैं

यहां पे बहोत सारे मशीन लगे हुए दिख रहे हैं एक व्यक्ति मशीन के सामने खड़ा है उसका फेस नहीं दिख रहा--

मौसम बहोत सा और यहां पे खिड़की मे ग्रीन कलर का कुछ दिख--

यहां पे एक थारी में बहुत सारी मछलियां रखी हुई दिख रहे --

और दो बच्चे खड़े दिख रहे हैं एक बच्चा ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा है।

और बहुत सारी टीचर भी दिख रही है बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं एक वाइट कलर की टी_शर्ट पहनी हुई लड़की दिख रही है।

मुझे रेड कलर का कुछ थैली फेंका हुआ दिख रहा है।

एक स्कूटी दिख रहा है उसका नंबर सिक्स वन सिक्स वन है।